टी शर्ट भी मल्टीकलर में कोई व्हाईट है कोई ब्लैक है कोई पर्पल हैं कोई ब्ल्यू है।

बाहर और यहा पे अ उसमें बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगी हुई है बाहर की तरफ एक छज्जा निकला हुआ है ए_सी लगा हुआ है पेड़ पौधे खड़े है।

चल रहा है यहां पे साथ मे काफी बिल्डिंग खड़ी है यहा पे ईटें वगैरा भी पड़ी हैं पत्थर पड़ा है सीमेंट पड़ा है और सरिये पड़े है और--

और दोनों ने व्हाइट कलर के शूज डाल रखे हैं यहां पे पेड़ पौधे--

और दीवार के ऊपर एक पेंटिंग बनी है उसका आगे की साइड अ पेंटिंग का वो है पीछे की साइड तो वाइट कलर की दिख रही है।

चिट्टे रंग का कपड़ा बिछाकर योगा कर रहा है यहां पे काफी पेड़ पौधे हैं कच्चा रस्ता दिखाई दे रहा है मिट्टी का और--

ये डी_जे की तरह लग रहे हैं ये जैसे गाड़ी में हों डी_जे ।

और यहां पे वॉश बेसिन भी रखे हुई हैं सीट भी रखी हुई है एक कुर्सी रखी है फ्रिज रखा है और शीशे--

ये रेडी खड़ी है जो मतलब बॉक्स टाइप में यहां पे काफी गाडी भी दिखाई दे रही है यहां पे जहाज है ये विजिट --

और एक नीले रंग का ड्रम है और एक आदमी अंदर की साइड दिखाई दे रहा है लाइट लगी हुई अच्छे अच्छे फ्लावर है।